कुछ आदमी भी हैं कुछ औरतें सलवार सूट में हैं कुछ साड़ी पेहनी हुई हैं।

वो अपने पैरो को पकड़ी हुई हैं और उल्टी लेटी हुई हैं।

पंखे में चार पंखुड़ियाँ है और एक आदमी अपने बाल कटवा रहा है।